इसमे मच्छलिया दिख रही है आदमी दिख रहा है ड्रम दिख रहा है मग्गा दिख रहा है।

पानी दिख रहा है नाँव दिख रही है।

इसमें हरमोनियाँ दिख रही हैं बोतल दिख रही हैं।

पेड़-पौधे दिख रहे हैं। पत्थर दिख रहे हैं। घास दिख रही है।

इसमें मछलियां दिख रही हैं। औरत दिख रही हैं।